यहां पर एक मंदिर है यह मंदिर में बहुत सारे आदमी पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं काफी सारे लोग यहां पे आए हुए हैं।

पूजा कर रहे हैं यह मंदिर बहोत ही बड़ी है चारों ओर से पेड़-पौधे मंदिर में लगी हुई हैं ।

यह एक कपड़े की दुकान है इस दुकान में बहोत ही अच्छी कम्पनी के कपड़े अच्छी क्वालिटी के कपड़े इस दुकान में मिलती है बहोत सारे ग्राहक इस दुकान से कपड़ा खरदीने के लिए इस दुकान में आते हैं।

यह बिल्डिंग अभी खण्डर हो चुकी है काफी सारे लोग यहाँ पे इस बिल्डिंग में रहते थे अभी यहाँ पे पूरा घांस लग गया --

यह गार्डन में बहुत सारे फूल के पौधे भी लगे हुए हैं बहुत सारे फूल लगे हुए हैं यह गार्डन देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है बहुत सारे गेंदे के फूल इस गार्डन में लगे हुए हैं।